दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो की बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं इसके आस पास बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत सारे टीन छाई हुए हैं इसके ऊपर किले ठोकी हुई है जो कि बहुत गंदी दिखाई दे रही हैं इसके आस पास हरी दूबा दिखाई दे रही है ऊ--

जिसपर बहुत सारा पानी डला हुआ है। एक लोग टायर भी लेजा रहा है। बहुत बार खम्बा दिखाई दे रहा है। उसके--

मूर्ति दिखाई दे दे रही है उसी के बीचो बीच एक कलश रखा हुआ है उसकी आसपास बहुत सारी दीवारों पर बोहत सारी चित्र टाँगी हुए है जोकी बोहत सुंदर दिखाई दे रही है।